पीछे की तरफ मेनू भी लगा हुआ है जो कि काले रंग का है।

और साथ में मुझे पीछे की तरफ एक बोर्ड भी नजर आ रहा है।

और बोहोत सारे लोग भी नजर आ रहे हैं।

फोटो में मुझे बहुत सारे दीपक दिखाई दे रहे हैं।

साथ में उन्होंने आरेंज रंग के कपड़े पहन रखे हैं।

फोटो मे मुझे एक गार्डन नज़र आ रहा है।

फोटो में मुझे सब्जी कि दुकान नजर आ रही हैं।

बहोत सारे लोग सब्जी खरीदने हुए नजर आ रहे हैं।

खाने की कुर्सियां भी है जहां पर बहोत सारी कुर्सियां रखी हुई है साथ ही मुझे पंखा भी आराम से दिखाई दे रहा है।

जहां पर मुझे एक व्यक्ति खेलता हुआ नजर आ रहा है।

और ब्लू कलर की जींस भी पहनी है साथ में आगे की तरफ एक कुर्सी भी रखी हुई है।

काले रंग की टाई भी लगा रखी है।

फोटो में मुझे एक खाली पार्क नजर आ रहा हैं जहां पर --

लाल रंग की एक पोस्टर भी लगा हुआ है साथ में लाइट्स भी जलती हुई दिख रही है।

जो कि व्यायाम कर रहे हैं साथ में पीछे की तरफ येलो कलर की बस भी नजर आ रही है।